बच्चों को कुछ न कुछ दिखा रही है वह बच्चों को बहला रही है।

ये इमेज में हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जा रहा है जिसके बाहर हमें बहुत सी गड़ियाँ दिख रही है वहाँ पे हमें बाइक स्कूटी और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी दिख रही है वहाँ पे हमें हॉस्पिटल का रंग गोल्डन दिख रहा है और वहाँ पे सफ़ेद कलर से रंग रंगा गया है खिड़कियों में वहाँ पे --

ट्रक के सामने बोरे रख रहे हैं वो बोरे पीले और सफेद कलर के हैं अंदर अलग-अलग चीजे भरी हुई है तथा वहां पर एक आदमी और खड़ा है जो कि मदद कर रहा है।

अंदर हमें एक बच्चे दिख रहे हैं जो कि बोरों को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं वह बच्चे छोटे है।

एक रेलिंग दिख रही है जो कि स्टील कलर की है वहां पर हमे झंडे खड़ा हुआ दिख रहे है जो कि लाल और ऑरेंज कलर की नजर आ रहे है और वो लहरा रहे है।